इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
line draw करना जोकि अणु के परमाणुओं से पास होने वाली axis है
axis के चारों तरफ अणु को spin करना और घुमाना
अणु में परमाणुओं से पास होने वाला plane draw करना
और point group वर्गीकरण को प्रदर्शित करना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको chemistry में पूर्वस्नातक की जानकारी होनी आवश्यक है और jmol window के operations के साथ परिचित होना चाहिए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
ubuntu operating system version 1404
jmol version 12232
java version 7 और mozilla firefox browser 350
प्रायः अणुओं में symmetry का वर्णन निम्न symmetry elements की terms में किया जाता है जैसे
axis of symmetry
plane of symmetry
center of symmetry आदि
हम अणु में इन symmetry elements को दिखाने के लिए jmol का प्रयोग करेंगे
अब methane के model में परमाणुओं से पास होने वाली c3 rotational axis ड्रा करके इस tutorial को शुरू करते हैं
मैंने पहले ही jmol window खोल ली है
modelkit menu पर click करें panel पर methane के model को ball और stick में प्राप्त करने के लिए
टूलबार में display menu प्रयोग करके methane अणु में परमाणुओं को label करें
display पर click करें label तक नीचे जाएँ और number विकल्प पर click करें
all methane अणु में सारे परमाणुओं को numbered दिए all हैं
परमाणुओं से पास होने वाली lines और planes draw करने के लिए हमें console में commands लिखने की आवश्यकता है
console खोलने के लिए file menu पर click करें
console तक नीचे जाएँ और इस पर click करें
screen पर console window खुलती है
lines और planes को draw करने के लिए हम command line में कीवर्ड draw प्रयोग करेंगे
jmol script commands पर विस्तृत जानकारी इस website पर उपलब्ध है
किसी भी web browser में website खोलें
कीवर्ड की सूची के साथ एक web पेज खुलता है जो jmol में script commands लिखने के लिए प्रयोग किया गया है
नीचे जाएँ और सूची में शब्द draw पर click करें
कीवर्ड draw के बारे में विवरण के साथ एक पेज खुलता है
draw command के लिए सामान्य syntax पेज के ऊपर दिया गया है
इसके बाद कीवर्ड के प्रयोग से सम्बंधित जानकारी आती है
अब jmol panel पर वापस जाते हैं
मैं console window को magnify करने के लिए kmag screen magnifier प्रयोग कर रही हूँ
एक line जो c3 rotational axis को दर्शाती है उसे draw करने के लिए
console में dollar prompt पर निम्न command type करें
command line शब्द draw से शुरू होती है उसके बाद object id आता है
command line में number 250 line की लम्बाई को बताता है
इसके बाद line की पोज़ीशन आती है
brackets में atom number equal to 1 और atom number equal to 2 enter दबाएं
पैनल को देखें
मीथेन के मॉडल पर परमाणुओं 1 और 2 से पास होने वाली एक लाइन बनाई गयी है
यह line अब rotation के लिए axis की तरह कार्य कर सकती है
हम दिए गए model पर एक से अधिक line बना सकते हैं
c2 rotational axis बनाने के लिए : console पर निम्न command type करें
इस command में curly brackets में numbers line के लिए कारटीशन coordinates को दर्शाते हैं
इसके बाद line के रंग को स्पष्ट रूप से बताने वाली command enter दबाएं
panel पर हमारे पास c2 और c3 rotational axes के साथ methane है
line 1 यानी c3 axis के चारों तरफ rotate करने के लिए निम्न command type करें
rotate $line1 60 rotate space dollar line1 1 space 60
number 60 rotation की degrees को दिखता है enter दबाएं
line1 1 के चारों ओर होने वाले rotation को देखें
line1 1 के चारों ओर होने वाले अणु को spin करने के लिए निम्न command type करें
spin $line1 180 60 spin space dollar line1 1 space 180 space 60
number 180 rotation की degrees को दिखाता है और 60 rotation की गति को दिखाता है enter दबाएं
panel पर हम देखते हैं methane का model line1 1 यानी c3 axis के चारों तरफ spin होता है
एक नियत कार्य में
इथेन के मॉडल में एक लाइन ड्रा करें जो सिमिट्री की c3 एक्सिस को दिखाए
और model को c3 axis के चारों तरफ spin करें
jmol panel पर वापस आते हैं
हम अणु में परमाणुओं के set से पास होने वाले planes भी draw कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए पहले निम्न command प्रयोग करके methane model पर lines को डिलीट करें
methane अणु के 12 और 3 परमाणु से पास होने वाले reflection यानी परावर्तन plane को draw करने के लिए
console में निम्न command type करें
command में number 300 plane के size को दिखाता है enter दबाएं
methane अणु में 12 और 3 परमाणुओं से पास होने वाले परावर्तन plane को देखें
परमाणुओं 14 और 5 से पास होने वाले दूसरे परावर्तन plane को draw करें :
console में अप arrow की दबाएं और निम्न की तरह command को edit करें:
plane1 को plane2 से edit करें और atomno2 को 4 और atomno3 को 5 से edit करें
plane के रंग को बदलने के लिए निम्न command type करें :
semicolon; color $plane2 blue semicolon color space dollar plane2 space blue enter दबाएं
panel पर methane अणु में हम दो परावर्तन planes को देखते हैं
jmol प्रयोग करके methane के लिए हम निम्न प्रकार point group classification यानी वर्गीकरण भी देख सकते हैं
अब panel पर methane अणु पर drawn किये हुए planes को हटाते हैं
console पर type करें draw off draw space off enter दबाएं
methane के लिए सारे संभव symmetry तत्वों को दिखाने के लिए: console में निम्न command type करें
draw pointgroup draw space pointgroup enter दबाएं
हम panel पर दिखाए गए methane के symmetry तत्वों को देखते हैं
methane के point group वर्गीकरण को जानने के लिए निम्न command type करें
td जोकि methane अणु का point group है console पर दिखाया गया है
point group प्रदर्शन के लिए एक अन्य classic उदाहरण allene है
हम modelkit menu प्रयोग करके panel पर allene का structure draw कर सकते हैं या हम chemical structure database से allene का structure download भी कर सकते हैं
अगर आप internet से जुड़े हुए हैं तो file menu पर click करें get mol तक नीचे जाएँ और text box में allene type करें ok पर click करें
allene के सारे संभव symmetry तत्वों को दिखाने के लिए
console के dollar prompt पर अप arrow की तब तक दबाएं जब तक आपको यह command न मिल जाये
draw pointgroup enter दबाएं
panel को देखें हम allene के लिए सारे संभव symmetry तत्व देखते हैं
allene का point group वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए
दोबारा console पर अप arrow की तब तक दबाएं जब तक command calculate pointgroup न मिल जाएँ enter दबाएं
allene के लिए point group वर्गीकरण जोकि d2d है console पर दिखाया गया है
उसी प्रकार आप अपनी पसंद के अणुओं को download कर सकते हैं और उनके point group की गणना कर सकते हैं
अब सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा
methane अणु में lines draw करना जोकि परमाणुओं से पास होने वाली c2 और c3 rotational axes हैं
axis के चारों तरफ अणु को spin और rotate करना
methane अणु में परमाणुओं से पास होने वाले परावर्तन plane को draw करना
और methane और allene के उदाहरणों को प्रयोग करके point group वर्गीकरण को प्रदर्शित करना
एक नियत कार्य में
dichloromethane के मॉडल में परावर्तन प्लेन ड्रा करें
और ammonia और benzene के लिए point group वर्गीकरण ज्ञात करें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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के एम एच आर the के nmeict के द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद